और यहाँ पर टीन भी लगा हुआ हैं सड़क भी कड़ी हैं एक बाइक भी दिख रही हैं।

एक दुकान खुली हैं यहाँ पर इस दुकान पर लिखा हैं ड्राइक्लीनिंरस इस पर अच्छा लिखा हैं क्वांटर भी डला हैं व्हाइट कलर से पेंट भी किया हैं।

यहाँ पर ऐसा लग रहा हैं जैसे सिनेमा हॉल हो यहाँ पर नीली कलर की बहोत सारी खिड़कियां भी हैं और--

देखने में अच्छा लग रहा है पेड़ भी दिख रहे हैं और यहाँ पर कुछ चबूतरे भी बने हुए हैं तीन पेड़ लगे हुए हैं और छोटे- छोटे पेड़ हैं गेट भी बहुत बड़ा लगा हुआ है यहाँ पर देखने में अच्छा लग रहा है--